अरे उसकी एक औरत नजर आ रही है पीछे टी शर्ट में --

यह गेट के पास है एक दुकान नजर आए दुकान के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है दुकान के कांच शीशे से बने हुए हैं।

सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है भिखाड़ा चौपाटी स्टोर दिखाई दे रहा है जिसमें चार पांच आदमी बाहर खड़े हुए एक पेड़ है जिसको सजाया हुआ है।

लाइट वाला प्लक भी लगाया गया है कुछ सीधा रखी है ऊपर से कुछ आधी तस्वीरे दिखाई दे रही है पूरी छः तस्वीरे है वो पूरी दिखाई --

लाइट लगी हुई है जोओ राइट तरफ मे घुमाई गई है एक लाइट जो लेफ्ट त के घुमाई गई है एक रास्ता दिख रहा है एकदम खुला सा।

बड़े-बड़े दोहरे बड़े-बड़े टीले से नजर आ रहे हैं थोड़ी सी जरा समुद्र के पास मिट्टी सी नजर आ रही है।

सेंटर पांच सेंटर दिखाई दे रहे है स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी नज़र आ रही है जैसे कि बड़ा नाम है इसका।

बिल्डिंग के पास एक बाइक खड़ी है वो भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के ऊपर पिलर बनाए गया हैं वो पिलर अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं बहुत ही खु --

केन पानी की केने पड़ी है पानी की गन्नों के पास कुछ टेबलें कुछ पड़ी है और टेबलों के पास कुछ कुर्सियां पड़ी है कुर्सियों के पास आई --

हुए नजर आ रहे बाइक लेके ओ शायद पेट्रोल भराते नजर आ रहे हैं पेट्रोल पंप के पीछे एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है जिसके आगे कूलर कालर सब लगे हुए है।

पीछे दो लड़के दिखाई दे रहे है दो लड़कियों ने एक लड़की ने वो लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है एक ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है।

उसके नंबर भी दिए हुए है उसके पास नई गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक रेड कलर की गाड़ी व्हाइट कलर की गाड़ी के पास खड़ी हुई है वो भी दिखाई दे रही --

नीचे गद्दा बिछाया गया है कारपेट बिछाया गया है दीवार से एकदम सफेद या वाइट दिखाई दे रही है लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है।